यहां पर एक घर है बड़ा सारा दो गाडी खड़ी है।

ये वाइब यंग स्टूडियो है। मेल्स एंड ब्यूटी का है।

बीच में दो कुर्सी डली हुई है साइड में एक सायकल खड़ी हुई है।

अंटी नंगे पांव बैठी है अंकल एक पैर ऊपर रखे बैठे हुए वो भी एक पैर नंगा एक चप्पल नीचे है उनकी।

ब्लैक और ब्राऊन कलर और व्हाइट कलर की--

नीचे टाइल लगी हुई है ग्रे और व्हाईट कलर की साइड में कॉफी और व्हाईट कलर की है टाइल है।

यह एक इलेक्ट्रिक शॉप है यहां पंखों के डब्बे रखे हुए हैं।

इस पे लिखा हुआ है वेलकम पार्टी ऑल डी_जे --

बर्थडे पार्टी किटी पार्टी कॉन्फ्रेंस हॉल --

साइड में एक पेड़ है बहोत बडा ये रेस्टोरेंट साइड में झूले बीच में गाडी खड़ी हुई है खंबे पे यह कलर का पेंट हुआ है।

ओर तफ रखे हुए है इसमे एक सामने तोप रखी हुई है ऊपर केतली टंगी हुई है एक बाल्टी ट--

अंदर डब्बे रखे हैं बहोत सारे दो ताले टंगे हुए हैं।

जिसमें लेडिजे बजा रही है आदमी बाजा रहे बहोत--

ये एक फूलों की शॉप है और फ्रूट की शॉप है बाहर फ्रूट भी रखे हुए हैं।

और साइड में शीशा भी लगा हुआ है।

बुजुर्ग भी है और जवान भी नीचे ब्लैक कलर की टाइल भी--

केरला होटल एक बाइक खड़ी हैं बाहर--

यह एक शादी हो रही है यहां पे--